एक बरा सा बोर्ड जहां ब्रिजस्टोन लिखा हुआ है।

इसी के पीछे में बहुत सारे जंगल है।

और दो लड़कियां है और--

ये एक रेस्टोरेंट है जहां कुछ लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं।

ये एक रोड़ की तस्वीर है जहाँ बहुत सारे है।

वॉल जो वाइट कलर का है और तीन कुर्सियां है।